पेट्रोल पंप दिख रहा है उसका बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है वहां पे पेट्रोल पंप की टंकियां दिख रही है वहां पे कुछ मोटरसाइकिले लेकर जाते हुए लोग दिख रहे है एक आदमी वह पर खड़ा दिख रहा दूसरी तरफ एक टैंकर खड़ा हुआ दिख रहा है पेट्रोल के लिए।

यहाॅं पे भी एक जो कुछ साईकिलें खड़ी दिख रही है पेड़ के एक पेड है उसके नीचे और वहाॅं से जाने-आने के लिए रास्ता दिख रहा है असमान दिख रहा है और भी कुछ दिख रहे है समने एक ईमारत दिख रही है।

एक बड़ीसी बिल्डिंग दिख रही है कार्यालय की जैसी वहां पे कुछ सफ़ेद कलर की गाड़ियाँ खड़ी हुई है और कुछ मोटरसाइकिल खड़ी है पेड़ बड़े पड़े दिख रहै है वह पे कुछ बच्चे--

रेल्वे स्टेशन दिख रहा है पेड़ दिख रहे है अअ रेल्वे स्टेशन के जो पीछे पत्रे का शेड बना हुआ है बेठने के लिए वो दिख रहा है कुछ लोग वहा पे दिख रहा है कुछ लड़कियां दिख रही कुछ औरते दिख रहे हैं।

कुछ बसेंस और कार खड़ी दिख रही है लाल कलर की कार दिख रही है बस के पीछे एक सीडी जा रही हैसिडिया दिख रही है दो आदमी भी दिख रहे है।

और इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा सा खम्भा दिख रहा है पेड़ दिख रहे है असमान धुप का दे धुप दिख रहा हैदिन का समय है।

एक पेट्रोल पम्प दिख रहा है उस का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है वहा पे एक सफ़ेद कलर की गाडी भी दिख रही है एक रिक्शा भी दिख रही है और सफ़ेद कलर की गाडी यहां पे दिख रही है।

और ररर असमान दिख रहा है दिन का समय दिख रहा है और ट्रक के पीछे कुछ एक आ रूम जैसा कुछ गोडाउन जैसा दिख रहा है। यहां पर अंधेरा दिख रहा है कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है।

खड़ा दिख रहा है रेलवे की रेल दिख रही है सामने जाने आने के लिए जगह दिख रही है।

वहा पे एक रेलेवे स्टेशन जैसे कुछ दिख रहा है उसके ऑफिस की बिल्डिंग दिख रही है वहा पर सामने से जाने आने के लिए रास्ता दिख रहा है वहां पे बेठने लिए भी एक बाग़ जैसा कोई दिख रहा है वहा पे एक आदमी खड़ा दिख रहा है।